ये तोते सफ़ेद भी है कुछ हरे भी है और देखने में बहुत ज्यादा क्युट लग रहे है और ये किसी शॉप में रखे हुए है अब ये नकली है या असली ये तो नहीं पता।